लाल करिया कलर का एक शटर लगा हुआ है वो सीडी चड़ने वाल है उजला कलर --

आर फोर्स आर एम ऐ एन आय सी और कम्पटीशन क्लास होता है इसमें एक आधे बैठे हुए है लाल शर्ट पहन कर।

एक ग्रिल लगा हुआ है उसमें रूही है काला कलर का ग्रिल है एक पक्षी है ऊपर बादल दिखाई दे रहा है वाईट कलर का बिल्डिंग खड़ा हुआ है।

बॉल लगा हुआ है भुक-भुकइया बॉल वो बुलु कलर का भूक-भुकइया बॉल है वो वाइट कलर का बॉल है बाइक लगा हुआ है बाइक है बुलु कलर का बाइक है एक आदमी दुगो आदमी अपना फैमिली लेके बैठा हुआ --

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रवर्तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय शाखा बहुआरा कमला चौक मुज़फ़्फ़रपुर जिला वैशाली पिन कोड चौरासी ईकतीस ज़ीरो चार।

ये आधार कार्ड सुधारने वाला एक लैपटॉप है उसमें अ यू.ए. लिखा हुआ है जिसमें कुर्सी काला कलर का है बोल चार पीस लग रहे है और उजला कलर का बोल है।

यहाँ एक स्ट्रीट फूड कॉर्नर हैअड्डा है स्ट्रीट फूड कॉर्नर का अड्डा है।